आगे की तरफ में बहोत सारी बसेस को भी देख पा रही हूँ।

जहां पे मैं बहोत सारे गिट्टी और बालू के ढ़े--

यहां पे मैं कुछ फ्लावर पॉट भी देख पा रही हूं।

यहां मैं सुंदर सुंदर फ्लावर देख पा रही हूं।

जहां पे मैं एक कुर्सी भी देख पा रही हूं।

नीचे वाले दुकान का शटर बंद है।

बी में कुछ लोगों को भी देख पा रई हूं।

जहां पे मुझे कुछ दुकानें बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

ये रोड पे मैं एक ट्रक देख पा रही हूं बगल में--

यहां मैं एक ट्रक के पीछे का हिस्सा देख पा रही हूं।

यहां मैं एक बड़ा सा हॉल देख पा रही हूं जहां काउंटर पे मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

बगल में मैं एक खंभा भी देख पा रही--

जहां पे ऊपर मुझे कुछ कलश रखे हुये दिखाई दे रहे है।

जो देखने में बेहद सुंदर लग रहा है।